इसमें कुछ मिस्री काम कर रहे हैं कुछ सीढ़ी है और यहां ढ़लाई काम होने वाला है।

पीछे में कुछ लोग खड़े हैपीछे कुछ डिज़ाइन किया हुआ है एक लोहे का पिलर है नीचे कपड़ा----

इसमें बहुत सारे लोग हैं एक घर है एक साइकिल है और दो सिटी रिक्शा है और भीड़ बहुत ही है।

ये एक एस_बी_आई का ए_टी_एम हैं ।

इसमें एक मैदान हैजिसमें एक आदमी घूम रहा है।

पीछे बहोत सारे पेड़ हैं।

साइड मे व्हाइट व्हाइट कुछ दिख रहा है। और आला इसमे ग्रे कलर का ---

इसमें एक पीलर है जो ईटा का बना हुआ है पीछे मे पूरा जंगल है।